एक आदमी छोटी सी दुकान खोल के बैठा है उसने पीले कलर की शर्ट पहनी है ऑरेंज कलर की कुर्सी पे बैठा है।

साइड वाले कोवर्ट में बॉल रखी हुई है जो वाइट कलर की है।

चीते के ऊपर ब्लैक कलर के स्पोर्ट्स है।

नीचे बहोत सारे कार्डबोर्ड पड़े है पीछे एक बाइक खड़ी है बड़ा सा पेड़ है।

बोहत सारे रेगिस्टर्स रखे हुएं हैं पानी की बॉटल्स हैं जो पिंक कलर की हैं पीछे बुक शेल्स बने हुएं हैं जिनमें बोहत सारी बुक्स रखी हैं।

ऊपर एक गुम्बद बना हुआ है एक काले रंग की टंकी बनी लग रखी है।

सामने दूर एक वाइट कलर का घर बना हुआ है मैदान में और कुछ और भी लोग है।

कॉलेज के ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है नीले कलर का जीसपे सफ़ेद अक्षरों में कॉलेज का नाम लिखा है।

रोड है रोड पर टेंट लगा हुआ है टेंट सफ़ेद कलर और पींक कलर के पर्दो से बनाया है।

सामने दो बॉक्स हुए है जो ट्रांसपेरेंट है।

का नाम हैसहनाज हुसैन जो की एक ऐंटि जेल है

यह एक कोचिंग क्लॉस है यहाँ पे बहुत सारे बे बच्चे बैठे हुएं हैं सभी बच्चो के आगे रेजिस्टर रखे --

करेला फूलगोबी बहुत सारी सब्जियां रखी हुई है ऊपर की तरफ पपीता और सेब रखे है।